पर ए_सी भी लगा हुआ है बहोत सारी लड़कियां भी बैठी हुई है।

दो लड़की फोटो खींचा रहे हैं लंबे लंबे बाल है लड़कियों के--

इसमें की एक हॉल है नीचे वुडन टाइल्स लगी हुई है।

सामने एक बहोत बड़ा काच लगा हुआ है साउंड सिस्टम लगा हुआ है भगवान की फोटो भी है बहोत सारे बच्चे डांस कर रहे योगा कर रहे।

ये बंगाली दुर्गा की फोटो है जोकि बहोत सुंदर है बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं बहोत सारी महिलाएं खड़ी है सलवार सूट पहनी है।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक नदी की है।